इसके ऊपर गनेश जी की सीनरी भी लगी हुई है।

व्हाइट ट्रैक्टर से उतारा जा रहा है।

ये कार एक साइड पे खड़ी की गई है।

इसके अंदर एक लड़का जिम कर रहा है।

अपनी काफी बॉडी बनी दिखाई रहा है उसने--

सामने मोबाइल की लीड की फ्लेक्स लगी हुई है।

ऊपर तीन बड़ी बड़ी लाइट्स भी--

सेंटर वाली मूर्ति साँई बाबा जी की है।

इसमें काफ़ी औरतें नीचे बैठकर--